और गेट पर एक जेंट्स खड़ा है और इधर में भी बहोत सारे जेंस खड़े हैं। उनके हाथ में कुछ भी कुछ लिए हैं लो ---

बहुत बड़ा दो तीन पेड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। येलो कलर का घर भी है।

और इधर का इधर साइड में एक हरा कलर का बाउंड्री भी है और इधर बड़ा वाला --